यहाँ पे आप देख सकते है यहां पे ढेर सारे पेड़-पौधे लगे हुए है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहां पे छोटे-बड़े पेड़-पौधे सभी हर छोटे-छोटे और बहुत ही बड़े-बड़े है मोटे-मोटे --

और यहाँ पे एम्बुलेंस में चार चकिया होते हैं दो आईने है देखने में बहोत ही अच्छे लगते हैं।

यहाँ पे आप देख सकते है देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और यहाँ पे झंडा गाड़े हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे बहुत ही बढ़िया हैं देखने में।

यहाँ पे आप देख सकते हैं साई कृपा क्लिनिक है जो की देखने मे बोहोत ही अच्छा लगता है।

यहाँ पे बोहोत ही सारे मोटर साइकल लगे हुए हैं जो की सभी कंपनीयों का है। पैशन प्रो का है और यहाँ गलेमर का है और यहाँ स्प्लेन्डर प्लस का है सभी का है। देखने मे बोहोत ही अच्छी लग रही है बोहोत ही बढ़िया।

काफी सुंदर है यह मेडिकल यहाँ पे दवाई मिलती है बहुत सारे बहुत ही अच्छे दिखने मे लगते है काफी सुंदर है यहाँ पे और यहाँ पे क्लिनिक का बोर्ड भी लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा काफी सुंदर है ये क्लिनिल ।

और यहां पे बॉउन्ड्री घेरे हुए है जो कि लाल ईटा से बहुत ही अच्छा देखने मे लगते है और यहां पे ढेर सारे पेड़-पौधे लगे हुए है जो कि बहुत ही हरे-भरे बहुत ही बढ़िया है।

यहा पे आप देख सकते है दलासों से सावधान यहा पे लिखे हुए है जोकि देखने में बहोत अच्छे है और यह बोर्ड पे लिखे हुए है दलासो से सावधान